एक बड़ा पार्क --

सुंदर जगह दिख रही है हरे भरे पेड़ है।

सामने लेरींग रेलिंग लगी हुई है।

दो लोगों की शादी हो रही है पण्डित भी बैठे हुए हैं।

सब्जी मार्केट दिख रहा है।

हरे भरे पेड़ और कुछ मकान भी दिख रहे है।

इस चित्र में एक --

साइकिल वाट दिख रहा है।

एक बहोत सुंदर शादी हॉल दिख रहा है पीले पर्दे हैं सामने हरे--

इस चित्र में एक शादी हाल विकास समिति दिख रहा है।

इस चित्र में सजावट ज्वैलर्स दिख रहा है।

सफेद रंग से पेड़ रंगा है।

पगड़ी बांधा हुआ है।

सामने व्यक्ति खड़ा है।

इस चित्र में एक ज्वेलरी शॉप --

एक ठेले पर रखे हे।

कुछ पत्थर पर खड़ा है।

कुछ दुकां कुछ खिड़कियाँ लगी हुई हैं।

इस चित्र में एक मकान दिख रहा है।

एक तबेला दिख रहा है।

पीछे लाल रंग का ऑटो लगा है।

टाइटें लगी दिख रही हे।

सजावट बहुत सुंदर की गई है।

इस चित्र में एक फैक्ट्री --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

बहोत सारे गेट खिड़कियाँ --

एक ज़ू दिख रहा है।

इस चित्र में पॉइंट --

जिसमें आप जिसमें --

लैपटॉप रखा हुआ है।